अठरह उन्नीस बालक दिखाई दे रहा है जिधर खेल रहा है।

चल रहा है साइड्स में ढेर सारी दुकान नजर आ रहा है।

एक दो तल्ला बिल्डिंग नजर आ रहा है जिसमें बड़ा-बड़ा छत दरवाजा है।

नजर आ रहा है एक नारियल गाछ नजर आ रहा है। उ --